टॉवल है वाटर बॉटल है।

लाल रेवन लगा है।

लोहे के गेट है।

एक आदमी खड़ा है।

एक रोड पे बैठा है।

गाड़ी के पास खड़ा है।

एक व्यक्ति किताब लिए हुए हैं।

ऊपर फ्लावर टंगा है।

कौन है आदमी है।

बैठने का जगह---

इनफंट वेयर बोर्ड है।

डस्टबिन है।

औरत है खिरकी है।